और ये जो कैनस् हैं ये एटलस के हैं इसके अलावा--

ये एक महावीर प्रिंटिंग प्रेस करके दुकान दिखाई दे रही है।

हाथ को ऊपर करके और टांग को टांग के ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे--

जो ऑफिस है उसके बाहर में कांच के ऊपर बहोत से--

सेव फल दिखाई दे रहे हैं फिर खजूर दिखाई दे रहा है दे रही है और यह एक ठेला है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं।

ये एक वार्ड दिखाई दे रहा है जनरल वॉर्ड किसी हॉस्पिटल का।

इसके अलावा जो है एक बंदा फिश काटते हुए दिखाई दे रहा है।

किताबें और लैपटॉप रखा हुआ है वो जो चार व्यक्तियां है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे।

यहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक पैनासोनिक का अह आउटलेट है एक सोनी का आउटलेट है।

इसके अलावा एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है प्रेस रखी हुई है।

जिसका नाम है नाई विद्या। इसके अलावा पीछे एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है बड़ी सी व्हाइट ।

एक स्कूल का कमरा दिखाई दे रहा है लैब है मैकेनिकल लैब ।

का रूम नंबर वन जीरो नाइन है अंदर एक ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा--

एक स्विचअ दिखाई दे रहा अंदर इसके अलावा कुछ टेबल्स दिखाई दे रही हैं बाहर एक बी_एम_ई का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कुछ लोग बाहर खड़े दिखाई दे रहे--

तोरन लगी हुई है तोरन से डेकोरेट किया गया है अंदर बैलून लगे हुए दिखाई दे रहे--

इसके अलावा स्टील की रेलिंग से जो है इसको कवर किया गया है।

वहां पर बाहर गेट पर एक गार्ड बैठा हुआ है और गेट --

की गई है उसके गुंबज़ दिखाई दे रहे हैं चार फिरोज़ी कलर के कवर से कवर किया गया है इस।

स्टैंड के ऊपर एक बड़ा मटका रखा हुआ मटके के अंदर एक नल लगा हुआ है।

कुछ कैलेंडर टंगे हुए दिखाई दे रहे अंदर कॉपी किताब बुक्स रखे हुए दिखाई दे रहे --

जिसमें एक का फेस ब्लर है कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों के जूते मोज़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बैग रखा हुआ दे दिखाई दे रहा है।